इस तस्वीर में मुझे ऐसा लग रहा है कि--

वो बीच में किसी चीज का स्टैचू है क्या बना हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है नीचे झारा पूजा टाइप का है।

देखने से पता चल रहा है कि कुछ सामान रखें--

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है गेट जो हैं--

इस तस्वीर में मुझे दिख रहा है कि एक मैडम जो है।

देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो है।

इलेक्ट्रिक के लाइट जो है कृष्ण बागवान पर--

और ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन समान क्या है क्या नहीं।

जो उसपे जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।

अम हल्का रॉड का दे फाटक है।

इस तस्वीर में मुझे ऐसा लगता है कि ये--

इस तस्वीर में मुझे ऐसा लगता है।